इस तस्वीर में एक कारखाना है कारखाने में बहोत --

अ और आसमान दिखाई दे रहा हैं ।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

मशीने दिखाई दे रही है जो सफ़ेद लाल ऑल और काले रंग की हैं ।

रंग की है घडी लगी हुई है सफ़ेद अ दो पंखे लगे हुए है टीवी लगी हुई हैं ।

एक मूर्ति हाथ उठाकर खड़ी हे यहाँ पर पेड़ बना हुआ हे।

मट्ट ज़मीन दिखाई दे रही है मट्टी की ज़मीन है।

इस तस्वीर में एक दुकान दुकान दिखाई दे रही हैं दुकान के बाहर कांच का दरवाज़ा लगा हुआ हैं।

घने घने पेड़ दिखाई दे रहे अअअ दिखाई दे रहे हे।

ऊपर से कुर्सियों में पन्नी चढ़ी हुई है कुर्सियाँ काले --

इस तस्वीर में म मंदिर -सा दिखाई दे रहा है मंदिर पिंक कलर --

और एक स्टेज बना हुआ है स्टेज में फ फूल फूल से सजा हुआ है हरी चार कारपेट बी --

इस तस्वीर में एक घर समझ में आ रहा है घर में --

शर्ट पहना हुआ है एक ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ है और वो --